और कुछ पत्थर भी दिखाई दे रहे है और सामने आसमान दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में हमे एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क पर गाड़िया दिखाई दे रही है और कुछ लोग भी दिखाई दे रहे

इस इमेज में हमे एक रास्ता दिखाई दे रहा है रास्ते के पास में ठेला दिखाई दे रहा है ठेलेपे कुछ सब्जीया रखी हुई है।

सब्जी मे आलू टमाटर लौकी रखे हुए है और गोबी भी दिखाई दे रही है पिछे की तरफ वो कार दिखाई दे रही है जो सफ़ेद रंग की है और कुछ पेड़ भी दिखाई दे रहे--

और आदमी दिखाई रहे है और सामने एक बाल्टी दिखाई दे रही है जो पीले रंग की है।